इस फोटो में सामने यहां पर एक जिम नजर आ रहा है।

और दीवार पर ऐ_सी भी लगा हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने एक बस खड़ी दिखाई दे रही है।

जिसका कलर ग्रीन है यहां पर बांधीपुर रिजर्व जेक्शन लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर कुछ हरे रंग की झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं यहां पर पत्थर --

जिसमें गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं।

और साइकिल भी रखी नजर आ रही है कुछ मुसलमान व्यक्ति मछली खरीद रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक पर्वत दिखाई दे रहा है जहां पर ये लड़के घूम-फिर रहे हैं।